पक्षी ब्राउन कलर का है और उसके पैर पीले कलर के हैं।

हर एक व्यक्ति खिड़की के सारे खड़ा है उसके बगल में एक साइकिल है।

हरी भरी घास मैदान है और एक मकान जैसा भी कुछ कन्सक्शन दिख रहे हैं।

पीछे कुर्सी लगी हुई है जिसमें प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है।

इसके ऊपर लाउडस्पीकर लगा हुआ है।

पीछे भी छोटे छोटे मकान दिखाई पड़ रहे हैं और पेड़-पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

उसके नीचे काफी प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियों पे काफी लोग बैठे हुए हैं।

ऑफिस के बाई और एक डेस्क बना हुआ है जहां पे कुछ कुर्सियां लगी हुई है जो नीले कलर की है।

इस चित्र मे कोई दुकान मार्ट दिखाई पड़ रहे हैं।

खिड़की दिखाई दे रही है जो खुली हुई है।

पीछे महल नुमा बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है।

एक स्कूल है आसपास काफी बाइक और कार दिखाई पड़ रही है।

प्याज दिखाई पड़ रहा है आसपास काफी दोपहिया वाहन हैं।

लाइटें भी हुई है और बाउंड्री वॉल भी है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लग रहा है।

पीछे नील दृश्य है मोर पंख भी लगाये गये है।

एच_डी में एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है।

उसके ऊपर एक बोर्ड है ब्लू कलर का जिसके ऊपर सक्सेस प्वाइंट भी लिखा हुआ है।

यहां टेब काफी टेबल कुर्सियां लगाई गई हैं।

इस चित्र में किसी मकान के ऊपर का छत दिखाई पड़ रहा है जो अभी हाल में ही ढलाई किया गया है।

इस चित्र में एक छोटे से पार्क का दृश्य है पार्क के बीच में काफी बच्चे फिसलने वाले लोहे की बनी हुई आकृति से खेल रहे हैं।

जाली लगी हुई है बाउंड्री के ऊपर जो लोहे से बनी हुई है।

और ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी दिखाई पड़ रहे हैं।

दाहिनी तरफ एक सेट भी दिखाई पड़ा है जो सफेद रंग का है।

इस चित्र में बिल्डिंग दिखाई पड़ रही हैं जिसपे काफी कांच लगे हुए है जो नीले कलर के हैं।

चित्र में एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

इस चित्र में एक ऑडिटोरियम दिख रहा है जो काफी बड़ा है।

इस चित्र में दो स्टैंडिंग दिख रहा है जिसके ऊपर हरिओम डेयरी लिखा हुआ है।

और उसके पीछे एक हरे रंग की टेंपो खड़ी है इधर एक व्यक्ति गमछा ओढ़े खड़ा बैठा हुआ है।

यहां पे काफी बच्चे अपने अपने डेस्क पे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस पे तीन लोग बैठे हुए हैं पीछे की तरफ छाता लेती जाती है हुई एक महिला दिखाई पड़ रही है।

बिल्डिंग के सामने दो स्कूटर लगी हुई है कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

गाड़ी भी आती हुई दिखाई पड़ रही है।

इस में एक फर्नीचर की दुकान दिखाई पड़ रही है।

इधर बाई तरफ कुछ बैठने के सोफे और चेयर्स लगे हुए हैं।

और पीछे एक बॉक्स भी रखा हुआ है।